जिसमें बहुत सारे वाशिंग मशीन दिखाई दे रहे हैं।

एक टी_वी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसपे ए_डी_ए लिखा है तथा नीचे छोटी हेडिंग लगी है जिसपे गांधी खाद्य आश्रम खादी पप्रद्योग भवन लिखा दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ सामान रखा हुआ भी दिखाई दे रही है।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

सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

सामने एक बड़ी से बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

अंदर कुछ लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।